अं कंपनियों में खड़े हैं बड़े बड़े बोरड भी लगे हुए हैं।

नीचे भी यहां दुकानें नजर आ रही है।

यह बहोत सुंदर होटल सा दिखाई--

यह बहोत सुंदर वाटिका दिखाई दे रही है।

और एक ओटो भी खड़ी है और यहां बड़े बड़े पेड़ से भी दिखाई दे रहे हैं और--

यहां डिब्बे से भी बहोत सारे रखे हुए हैं बहोत बड़ा बोरड भी लगया हुआ है।

यह एक बहोत बड़ी दुकान है।

और एक नीचे गोदाम से में भी--

और घ घर से भी दिखाई दे रहे है।

ये है बहुत सुंदर घर दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा सफाई भी है।

बहोत सुन्दर नजारा दिख रहा है पीछे एक रिक्शा और आ रही हैं।

दे रहे हैं बहोत अच्छा हरियाली सी नजर--

यह परचून की दुकान दिखाई दे रही है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यह चार दुकानें हैं लगती--

नजर आ रहे हैं और एक गाड़ी भी वहां पर खड़ी है।